अ कुछ देर तक आदमी सब देखते हैं और माथा पे कुछ लिए हुए और नदी के किनारे मम जा रहे होते हैं और साइकिल वाला भी घर से आ रहे होते हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग हैं बिल्डिंग के अंदर जाने वाली रस्ताए हैं ये रास्ता से ढेर सारे लोग सब जाते हैं और निकलते हैं।

एक मशीन वैसे ही खाली पड़ा हुआ है और टाइल्स मार्वल भी लगे हुए हैं और एक आदमी यहाँ पर देख रहे हैं हम जो काम कर रहे --